आस पास का क्षेत्र भी बहुत ही सुहावना लग रहा है।

यह एक पेट्रोल पंप है और इसके चारों ओर में बहोत सारे पेड़ पौधे है पेट्रोल पंप के अंदर में चबूतरे के अंदर में एक बहोत बड़ा पेड़ है।

पेट्रोल पम्प के ऊपर में लिखा हुआ इंडियन ऑयल ।

और आस पास का क्षेत्र भी बहुत ही साफ सुथरा दिखाया गया है और यहां लाइटिंग बहुत ही अच्छी की गई है एक औरत कुर्सी पर बैठी हुई है उसका बाल खुला है।

रोड के किनारे एक बहुत बड़ा पेड़ है और आजू-बाजू में भी बहुत सारा पेड़ को दिखाया गया है।

एक लड़का कुर्सी पर बैठा हुआ है उसके बगल में एक व्यक्ति और है जो काला कलर का शर्ट पहना हुआ है।

बहुत सारे पार्ट पुर्जा खोल के रखा गया है एक व्यक्ति का पैर दिखाया गया है।

सभी पेड़ पौधे के पत्ते बहुत ही हरे भरे दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में बहुत सारे कार गाड़ी को दिखाया गया है जो कि लगभग सब एक ही कलर का है सब व्हाइट कलर का कार दिखाया गया है।

पूरा नाव वाइट कलर और ब्लैक कलर से पेंट की हुई है।

इस फोटो में एक ठेला को दिखाया गया है जिसके ऊपर बहुत सारे बोर रखे हुए हैं बोरे के अंदर कुछ सामान है।